यहां पर एक ए.टी.एम. है। और कुछ दुकानें है ए.टी.एम. के ऊपर कुछ बैनर लगे हुए है।

लड़कियों से लोग दिख रहे है बैठे हुए और बाहार भी कुछ लोग है एक आदमी जहाँ हाथ में थैला लिए हुए है रोड पे चल रहा--

यहां पर कच्ची जमीन है उसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है घर बना हुआ है उसके ऊपर कुछ बैनर लगे हुए हैं छतरी लगी हुई है।

यहां पर रोड है रोड रोड के किनारे एक टैक्सी खड़ी है जो ग्रीन कलर की है और उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है।

यह एक ऑफिस आएगा। यहां पर टीचर्स आएंगे कुछ टीचर्स खड़ी हुई है पछताएंगे है।

और जाल के ऊपर कुछ आदमी है जो चल रहें हैं काम कर रहें हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर मज़दूर भी है जो खड़े हैं काम कर रहें हैं।

पर बाजार रहेगा बाजार में बहुत सारे लोग हैं आदमी औरतें बच्चे सभी लोग हैं यहां पर फूल बिक रहे हैं जमीन में बहुत सारे फूल रखे हुए हैं।